अ बैलून से डेकोरेशन है ऊपर भी कुछ बैलून से डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

इसमे सामने की तरफ एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज पर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैंऔर वो लोग --

फोटो निकलवा रहे है उनमें से एक इंसान कैप पेहने हुए हैं।

इसमें एक नाला जैसा दिखाई --

इसमें एक सड़क बनी हुई दिखाई दे रही है सड़क के बीचो-बीच --

और यह सफेद रंग से पुता हुआ दिखाई दे रहा है।